बीच में गोल गोल चक्के बने हुए है जिनपे डंडा लगा है।

यहां पे एक घर है जिसके बाहर एक टंकी है जिसपे शुद्ध पेयजल लिखा हुआ है।

यहां पे एक आदमी है जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

यहां पर कुछ मेज और कुर्सियां पड़ी हुई है जो लकड़ी की बनी हुई है।

यहां पे पीले रंग की सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ बच्चे खड़े हुए जिन्होंने बैग टांग रखा है।

यहां पे बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है जो काले रंग की है।

यहां पे बहुत सारे फूल और माला लगे हुए हैं।

यहां पे गार्डेन दिखाई दे रहा है इसमें छोटी छोटी घास उगी हुई है।

इस गार्डन में बहुत लोग दौड़ लगा रहे हैं जो रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पे एक शीशा भी लगा हुआ है इसके आगे बहोत सारा समान--

यहां पे बहोत सारे गुब्बारे भी लगे हुए हैं जो सफेद और लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारी पाइपें पड़ी हैं।

यहां पे बहुत सारे प्लास्टिक के छोटे छोटे दिखाई दे रही है।

यहां पे एक मंच दिखाई दे रहा है जो बहुत ही अच्छा है। यह --

इस मैदान में बहोत सारे बच्चे अपना अपना खेल कुछ न कुछ खेल रहे है।

बहुत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं जो पानी में पड़े हैं।

जिसके बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं।

यहां पे बहोत सारा पानी है जिसमें कुछ लोग नहा रहे हैं और कुछ बैठे हुए हैं।